गेट दिख रहा है और पीलर दिख रहे हैं बहुत सारे घर बन रहा है।

और लाइट लगी हुई है येलो कलर का वॉल पेंट हुआ है।

रेड और व्हाइट कलर के बालून है बाहर बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं।

रूम में लाइट लगी हुई है रिक्क्षिक को रूम में रखा हुआ है।

आगे एक ये टायर ए टायर एक लगे हुए हैं।

वात वॉल पे वॉच टंगी है और--

और बोहोत सारी स्कूटी खड़ी है बाइक खड़ा है कुछ लोग हैं।

और नर्स ब्लू कलर का जैकेट पहनी हुई है।

रेड कलर से स्कूल का नाम लिखा हुआ है डांस स्कूल

और ब्लू कलर का बल्ब लगा हुआ है गेट दिख रहा है।

और में लाइट्स लगी हुई है और झंडा लगा हुआ है।

और इस पे पानी है बीच में छोटी लंबी सी सड़क दिख रही है।

और पूरे ईंट की इमारत दिख रही है बनी हुई गेट है सभी--

और लोगो बना हुआ है नीचे ए_टी_एम के बाहर एक आदमी खड़ा है।

और टेबल के उस साइड में रैक बना हुआ है ग्लास का--

फोर व्हीलर खड़ी है कुछ कुछ की फोर व्हीलर की लाइट्स रेड कलर की जल रही है।

मेरे सामने सीढ़ी दिख रही है और कुछ लोग बैठे है।

और अंदर भी एक बैनर टंगे जिस पे हर फ्लेवर के आइसक्रीम के चित्र बने हुए हैं।

बेकरी के सामान रखे हुए है चिप्स के पैकेट बिस्किट और पानी का बॉटल रखा हुआ बाहर।

और पीछे जिम वाली मशीन दिख रही है।

और मशीनें लगी हुई हैं बड़े बड़े से रॉड लगे हुए हैं।

ब्लू कलर की रेड कलर की ऑरेंज कलर की मशीन है।

ओस बिची हुई है दुकानें दिख रही है।

अं बड़ा सा खेत दिख रहा है खेत में कुछ--

जो दो लोग है पीछे झुक झुक के तोड़ रहे है।

यहां सामने मुझे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है और--